एक अ आधी अधूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका काम अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग में हमे यहाँ पे बहोत सारी खिड़कियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर बहोत सारे बासे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें --

सिलवर और लाल दिखाई दे रहा है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और हमें यहाँ बहुत सारे फूल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग की दीवाल पे हमें बहोत सारे काँच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। काँच के उपर हमें बहोत सारी पेंटिंग बनी हुई नजर आ रही --

बहोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग हमें बहोत बड़ी नजर आ रही है और उसके उपर हमें बहोत सारे कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है जो कि काले कलर के नजर आ रहे है। साथ ही साथ उसकी दीवाल का कलर हमें यहाँ पर कत्था दिखाई दे रहा है।

और हमें यहाँ पर एक अंडे की ट्रे रखे नजर आ रही है। जिसमें कि उसमें बहोत सारे अंडे रखे दिखाई दे रहे है और हमें यहाँ पे बहोत सारे डब्बे नजर आ रहे है और हमें यहाँ पर वजन गिनने वाली मशीन दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक लैपटॉप रखा दिखाई दे रहा है जो कि बहोत बड़ा है।

हमें यहाँ पर एक बहोत ही बड़ी नदी दिखायी दे रही है। नदी में हमें एक क्रोकोडाइल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि एक मगरमछ की तरह नजर आ रहा है। नदी में हम बहोत सारा पानी दिखायी दे रहा है। पानी का कलर हमें यहाँ पर काला दिखाई दे रहा है। पानी में हमें बहोत सारे पत्ते गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं जोकि बहोत दूर-दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं।

नदियां में नदी के बाजू में हमें बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है जो कि काले कलर के नज़र आ रहे है। उसके ऊपर से हमें एक पुल जाता दिखाई दे रहा है जो कि एक ट्रेन का नजर आ रहा है।